ये चित्र मा हम ते के बड़ी दुकान छा दिखेण लगीं जै का भितर हम ते कुछ दावेय अर कुछ अलमारी छन दिखेण लगीं जुं पर कुछ दिखि छन।

अर वै का एंच एक झंडा छ दिखेण लग्युं बिच बाट पर हम ते कुछ लोग भी छ दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम ते एक सड़की छ दिखेण लगीं जै का किनारा हम त कुछ पाथ छन दिखेण लग्यां।

उंडे फुंडे हम ते बड़ा बड़ा डाला छन दिखेण लग्यां दिखेण से यु डाला बांज कु डाला छन लगण लग्यां अगाड़ी हम ते एक बड़ु जंगल भी दिखेण छे लग्युं ओर पोर हम ते कुछ गिट्टी रूड़ी छे दिखेण लगीं।

ओर पोर हम ते दिवाली पर बड़ी बड़ी खिड़की छन दिखेण लगीं जुं पर भितर बिटि पर्दा भी छ लग्यां यखा मा एक पिल्लर छा जै पर एंच एक टैटू छ लग्युं जै पर फिटनेस जिम छ लिख्युं।

जै का ओर पोर हम ते बाढ़ छ दिखेण लगीं जफणा हम ते बहोत बड़ा बड़ा डाला भी छन दिखेण लग्यां अर पार फणा भी हम ते कुछ डाला छ दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम ते एक बड़ु कमरा छ दिखेण लग्युं जै का एंच हम ते टीन की छपर छ दिखेण लगीं भ्वाँ फणा हम ते बड़ी बड़ी कसरत कने की मशीन छ दिखेण लगीं कसरत कने ता हम ते बड़ा बड़ा डम्बल छ दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम ते एक इमारत का भीतर एक बड़ु कमरा छ दिखेण लग्युं जफणी ओर पोर हम ते बड़ी बड़ी मशीनी छ दिखेण लगीं।

वहाँ हमते एक लाल रंग की दरी च दिखेण लगी एैंच फणी हमथे कुछ लैट च दिखेण लगी ओर-पोर हमते बड़ा-बड़ा सीशा सन दिखेण लग्या दिखेण सी यू जगा बी हमथे पुराणी वाली ही जिम की फोटू च दिखेण लगी।

दिखेण से यू मशीन भी कसरत कने की मशीन छ लगण लगीं जफणा हम ते बड़ा बड़ा डम्बल छन दिखेण लग्यां अर कुछ प्लेट छन दिखेण लगीं काला रंग कि उंडे फंडे हम ते बड़ा बड़ा सिसा छन दिखेण लग्यां जुं का एंच कुछ लिख्युं भी छ।